ये एक चित्र है यहाँ पर बहुत सा--

बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और सूरज नज़र--

बहोत बड़ी शॉप है यहां बहोत सारी पेस्टी और चीजे रखी हुई है और यहां पर पंखा भी है।

ये एक चित्र है यहाँ बहुत सारे तलाव भी है और यहाँ फैत भी है और एक--

ये एक चित्र है यह बहुत बड़ा ऑफिस है।

ये एक चित्र है ये एक बड़ा वाइट कलर --

यह एक चित्र है और यह एक बहुत बड़ा घर भी है।

फूल रखे हुए हैं गेंदे के और यहाँ पर बहुत सारे लोग--

घर भी है और ऊपर औरतें खड़ी हुई हैं नी--

ये एक चित्र है ये एक बड़ी शॉप है।

पेड़े भी लग रहे हैं और नाव में दो आदमी भी खड़े हुए हैं और सूरज भी नजर आ रहा है।

ये एक चित्र है और ये बैंक भी है यहाँ बहुत सारे लोग अंदर बैठे हुए हैं और--

बाहर गेट भी है वाइट कलर का और बाहर कार भी खड़ी हुई--

ये एक चित्र है यहाँ एक शोरूम नज़र आ रहा है और यहाँ बहुत सारे--

चित्र है यहाँ एक बिल्डिंग बनी हुई है वाइट कलर की और यहाँ डो--